यह एक मैदान है जिसमें मिनी वॉटर फाउंटेन लगा हुआ है और कुछ फूले दिख रहे हैं।

जो अपनी कार को मरम्मत कर रहा है।

नर्सरी काफी लंबी चौड़ी बनी हुई है.

इस ऑफिस में बेलून भी लगी हुई है जो हमारे तिरंगे को दर्शाता है.

यह एक साड़ी की दुकान है.

लेडिस खड़ी हुई है.

और इस प्र-पर्व में झूले में भगवान को ले जाया जा रहा है.

इस घर को रंग-बिरंगे रंगों से सजाया गया है.

और कुछ कांच की रैक कपबर्ड नुमा दिख रहा है.

और कुछ लोग दिख रहे हैं.

पास में ऊंची ऊंची इमारतें हैं.

जिसे लोग विसर्जन के लिए जाते हुए दिख रहे हैं.

इसमें कुछ कुर्सी टेबल लगे हुए हैं

जिसमे अलग अलग सेकसन बने हुए हैं।

रंग बिरंगे काच लगे हुए हे.

कुछ फूले दिख रहे हैं.

और कुछ लोग वहां से आवागमन कर रहे हैं.